इधर वाला वियु है ये जो बिल्डिंग है वो भी बहुत मस्त लग रहा है नीचे टाइल्स लगा है बहुत मस्त लग रहा है बाउंड्री भी बहुत मस्त लग रहा है नीचे घास तास है बहुत मस्त लग रहा है।

ये नाव भी बहुत ही बढ़ियां है पानी बहुत ही मस्त है बहुत ज्यादा पानी है इधर बालू भी बहुत बढ़ियां है।

ये बिल्डिंग बहोत ही बढ़िया है ओ बगल वाला बिल्डिंग भी बहोत बढ़िया है गाछ भी बहोत बढ़िया हैं।